देखी ई भगवान का मंदिल है मतलब काली मां का मंदिल है बहुत पुरानी मंदिल मतलब आज पूजा है इसके तो आज हम कह सकते है इसके लिए यहाँ पे यहाँ बहुत सारे सब चीज का सुविधा है आराम से संपत्ति समृद्ध पूजा किया जा --

यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी लगे चुके हैं कितना मतलब कम से कम पांच गाड़ी है पांच गाड़ी है मतलब अच्छी व्यवस्था इन सब मतलब दो गाड़ी ढका हुआ है तीन गाड़ी उघार ल एलवेस्टर पे है और अलग-अलग पेड़-पौधे भी हैं।